आ ग्रीन कलर का बर्तन है।

यहां हरी हरी घास है।

एक कपड़े सिलने के लिए मशीन है।

यह एक मंदिर की पिक्चर है।

यह एक एस_बी_आई स्टेट बैंक है।

बहुत सारा लोहे का सामान पड़ा हुआ है।

और एक व्यक्ति टायर ठीक कर रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यहां पर दो स्टूल हैं।

और पास में ईंट हैं बेंच बिछी हुई है।

यहां पर एक मकान पर दो टैंक रखे हुए हैं।

किताबें आलमारियों में रखी हुई हैं।

यह एक घेर की तस्वीर है।

एक गाड़ी साइड में खड़ी हुई है।

जो कपड़े से ढकी हुई है।

और एक साइड मकान है।

यह एक मैदान है यहां पर बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है।

फैशन हाउस टॉयज स्पोर्ट गेम --

कुछ आदमी पैदल है और पास में ठेला लगा हुआ है।

यह एक बस स्टॉप है।

इसके पास में ग्रीन कलर पर वाइट कलर का प्लस का निशान बना हुआ है।

इन बच्चों ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

एक फैन रखा हुआ है चेयर है।

यहाँ फोन रखा हुआ है यहां एक मेज है।

यहां पर बहुत सारी शराब रखी हुई है।

ये तीन व्यक्ति नाव में बैठे हैं इनकी दूसरी तरफ--

इन व्यक्तियों की नाव ग्रीन और येलो कलर की है।

उनके पास में पेड़ पौधे हैं।

और अलमारियों में पेंट के डिब्बे रखे हुए हैं।

बाहर गेट तक बिछा हुआ है।

यह एक कढ़ाई है इसके ऊपर स्टील की प्लेट में जलेबियां रखी हुई हैं यह कढ़ाई काले रंग की है।

इसके पास में छोटे छोटे घास है।